ऊपर वाइट कलर का टेंट भी डाला हुआ है।

यहां पर बाजू में बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी बोतलें रखी हुई हैं।

बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं।

बहुत बड़ी दिख रही है गणपति के गले में--

और कुछ तीन शेड भी दिख रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे जाड़े पेड दिख रहे --

ऊपर पूरा आसमान है ये दिन का मंज़र दिख रहा है।

बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

बाज़ू में एक शटर है जो कि बंद है।

ऊपर एक आदमी बैठा हुआ --

यह एक ग्रीन कलर की बाइक दिख रही है।

नीचे ब्लू कलर का कारपेट डाला हुआ है।

यहां पर बहोत सारी छोटी-छोटी --

यहां पर बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

एक औरत मछलियों को खरीद रही है।

तांबे कलर की प्लेट में कुछ खाने को रखा है।

और ये एक दिन का मंजर दिख रहा है।

एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है बहुत सारे फैन भी दिख रहे हैं।

यहाँ पर बहुत सारे बच्चे नाच रहे हैं।

दो लोग चलते हुए चंद्र को जा रहे हैं।

और ऊपर एक प्लस का मार्क भी दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारे झाड़ दिख रहे हैं।

नीचे बहुत सारा पानी भी दिख रहा है।

यहां पर एक हरा भरा गार्डन दिख रहा है।

यहां पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल दिख रहा है।

और ये एक दिन का मंजर दिख रहा है।